और यहां पे बहुत सारे पेड़ है अलग अलग साइज के।

पेड़ लगे हुए जो इसका लुक बहोत ही अच्छा लग रहा है यहां पे बहोत सारे फ्लावर्स भी है रेड कलर के--